खड़े हुए हैं और पोस्ट ऑफिस लेटर बॉक्स भी है।

पानी के नीचे दबे हुए हैं।

इस पिक्चर पर हमें पेट्रोल पंप दिखाया गया है जोकि इंडियन ऑयल कंपनी का है।

छत पर हमे एक फर्नीचर की दुकान दिखाई गई है।

यहां हमें व्हाइट कलर की दीवारें भी दिखाई गई--

लोग अपने काम काम कर रहे हैं।

अन्य प्रकार के लोग दिखाई दे रहे हैं।

के ऊपर कुछ लोग दिखाई दे रहे है और यहां साइड में बहुत सारे रॉक्स भी--

इस फोटो में हमें कुछ पेड़ नजर आ रहे है और पेड़ के नीचे बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे है।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

ब्रिज के ऊपर जगह पे स्थित है।

एक फैन भी दिखाया जा रहा है।